बच्चों को इंजॉय कर वाने के लिए फ्लावर है और पौधे लगे पड़े हैं इधर उधर--

कुछ ने हाफ निक्कर पहन रखा है कोई सरदार है और बैठा हुआ है कोई बंदा--

एक ग्राउंड है ग्राउंड के अंडर बहोत बढ़िया घास दिख रही है नारियल जैसे पेड़ दिख रहे है पांडा के पेड़ हैं।

और बढ़िया रेस्टोरेंट है मीटर दिख रहा है छत दिख रही है ऊपर उसके शटर और एक और है ऊपर लोग रहते भी हैं।

रैक में बाइक को किस तरीके सजा रखा है कुछ नए बाइक रखे हैं कुछ पुराने हैं ऊपर एक चद्दर वे घाटा डाल रखा है।

ये वेडिंग हॉल हैं। यहां पर खाने की सजावट कर रखी है बर्तन रखे हुए हैं और सजावट बहोत अच्छी लग रही है। ऊपर लाइट्स लगा रखी है।

यहां पे डेकोरेशन हो रहा है व्हाइट अह त्रिपाल से लगा के फिर ऊपर से छत का ग्रीन कलर का कर दिया और रेड कारपेट बिछा दिए है।

लाइट ऑन कर रखी है उसने माइक्रोस्कोप पे बैठी है उसने एक दुपट्टा डाल रखा है चोटी बना रखी है येलो कलर का टॉप पेहन रखा है।

और फैक्चरिंग हो रखी है ब्लैक कलर के कोट के कवर्स है।

घर की डिजाइन अच्छी कर रखी है ब्लू पिलर हो रखा है शॉप अच्छा बना रखा है और सु आंटियों ने साड़ियां पहन रखी हैं ऊपर से शॉल ओढ़ रखी है।

चटाई पे बैठी हुई है पेंट येलो करवा रखा है ब्राउन गेट हैं पर्दे ब्लैक लगे हुए हैं।

हर बंदे के लिए अलग अलग केबिन है तीन शटर हैं एक पंखा लगा हुआ हैं।

चप्पल पहन के खड़ा हुआ है ब्राउन कलर की जीना है।

और इस स्टेशन है हाजीपुर का और हाजीपुर में ट्रेन आती है बंदों को जगह जगह ले जाती है घूमाती है।

ये जिम है यहा पे तरह तरह के जिम लगी है डंबल्स रखे है।

प्ले ग्राउंड है। यहां पे सुखी घास है सुखी मट्टी पड़ी हुई है कुछ बंदे हैं यहां पे--